आप में से बहुत से लोग अपने गाँव के इस दृश्य से परिचित होंगेबच्चों का एक समूह एक खुले क्षेत्र में खेल रहा है
इस लड़के को देखें जो उस ball का पीछा कर रहा है
वो पास के झाड़ीदार क्षेत्र में प्रवेश करता है
वह एक साँप देखता है
देखते ही देखते साँप अपने बिल के बाहर आ जाता है
डरा हुआ लड़का पत्थर फेंक कर साँप को भगाने की कोशिश करता है
साँप दूर नहीं जाता है
बल्कि वो लड़के की तरफ आता है और उसके पैर में काट लेता है
लड़का मदद के लिए चीखता है
उसके दोस्त मदद के लिए उसकी तरफ भागते हैं
वो उसके पैर पर दो लाल धब्बे देखते हैं
वे लड़के को झाड़ियों से बहार they they हैं
वहाँ हंगामा मच जाता है
सारे बच्चे प्राथमिक उपचार के बारे में भिन्नभिन्न सलाह देते हैं
यहाँ साँप के काटने की स्थिति में प्राथमिक उपचार जानने का महत्व पता चलता है
first aid on snake bites के spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम देखेंगे
* प्राथमिक उपचार कितना ज़रूरी है और
* साँप के काटने पर सही प्राथमिक उपचार case देते हैं
प्राथमिक उपचार के निर्देशों पर जाने से पहले
हम समीक्षा करेंगे कि लड़को के समूह ने अपने दोस्त को बचाने के लिए क्या किया
उन्होंने लड़के को लेटा दिया
और फिर उन्होंने उसे अस्पताल ले जाने के लिए बड़ों की मदद मांगी
फिर उन्होंने घाव के ऊपर कपडा बाँधा
क्या यह सही प्राथमिक उपचार था
हाँ ! एक तरह से यह ठीक है
इस स्थिति में अस्पताल ज़्यादा दूर नहीं था
अतः लड़के को चिकित्सा समय पर मिल गयी
साँप के काटने की स्थिति में प्राथमिक चिकित्सा का सही तरीका निम्न प्रकार है
व्यक्ति को समतल सतह पर लेटा दें
प्रभावित क्षेत्र पर कपडा लपेटें
प्राथमिक उपचार का प्रथम उद्देश्य विष को पूरे शरीर में फैलने से रोकना है
और घाव के चारों तरफ हमें कपडा कैसे लपेटना चाहिए
टाँग के upper भाग से कपडा लपेटना शुरू करें और नीचे तक जाएँ
आगे के उपचार के लिए व्यक्ति को पास के अस्पताल में जल्द से जल्द ले जाएँ
इस प्रकार समय पर दिया गया प्राथमिक उपचार बहुत से नुकसानों को रोकता है
याद रखें गलत प्राथमिक उपचार किसी की स्थिति ख़राब कर सकता है
साँप के काटने पर करने योग्य bite
सबसे पहले पीड़ित को नीचे लेटा दें
कपडा लपेटते समय कुछ दबाव लगाएं
और साँप के काटने पर न करने योग्य bite
cut हुए के चारों तरफ की skin या माँस न काटें
कटे हुए पर या उसके चारों तरफ बर्फ न रखें
व्यक्ति को बिजली का झटका न do
कटे हुए स्थान से खून या विष को चूसकर बाहर निकालने की कोशिश न करें
कपडे को बहुत tight न बाँधें यह gangrene कर सकता है
यह video spoken tutorial project के bridge the digital divide initiative का हिस्सा है
spoken tutorial project के बारे में अधिक जानने के लिए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
इस मिशन पर अधिक जानकारी